में आने वाले श्रद्धालुवो को बहुत ही आनंदित महसूस होता हैं और भगवान के प्रति श्रद्धा भाव के साथ ये भी श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं।

--में भी सभी-सभी श्रदालु अपना-अपना छठ का त्योहार मनाते हुए प्रतीत हो रहे है जिसे बहुत भव्य रूप से मनाया जाता है।

--और इस टाइप से बहुत ही अच्छे तरीके से भव्य रूप से मनाया जाता है और सूर्य बाबा को अर्ग दिया जाता है।